और यहां पे बहोत सारे रेड कलर के सर्विस स्टेशन बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और लेडीसो ने अ जेंट्स ने सबने पैंट शर्ट --

आस पास में काफी अच्छी सा सजावट यहां पर दिखाई दे रही है जो की गई है लोगों द्वारा।

कार है जैसा हम देख सकते हैं इस पिक्चर में।

और इसके बाहर बहोत सारे गमले वायगेरा लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये जो पिक्चर है ये एक मतलब बस स्टैंड के बाहर की पिक्चर लग रही है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं और यहां पे आसपास में काफी अच्छी व्यवस्था नजर आ रही है।

और ये लंबी सी सड़क जाती हुई नजर आ रही है।

ये पिक्चर एक नेका बेकरी शॉप की पिक्चर है।

काफी अच्छी यहां पे फोटो ली गई है।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

जो पेड़ है काफी हरा भरा है जो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे हरे भरे--

और यहां पे तकरीबन अह ब्लू रंग का शॉपिंग की जगह है मतलब सामान है रखने की जगह उठाने की जगह।

यह एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें ये वाला काम किया जाता है।